पीछे से एक पंखा टाइप से लगा हुआ है वो एक मशीन है एक लोहे का वो बना हुआ है पन मेज पे मेज पे तख्ती लगी हुई है वो भी बोहोत पुरानी हो चुकी है।

ये एक ऑफिस रुम है यहां पे कुछ अ सामान पड़ा हुआ है दो मेजे पड़ी हुई हैं दो कुर्सी एक कुर्सी पड़ी हुई है।

ऊपर घास लगी हुई है पहाड़ बना हुआ है रोड बना हुआ है उस पे कुछ आकृति बनी हुई है ऐं और पेड़ लगे हुए हैं छोटी-छोटी घास लगी हुई है और मिट्टी भी है।

बहोत सारे लोग बस पे चढ़ रहे हैं कुछ लोग नीचे है कुछ लोग उतर रहे हैं बे लोगों के हाथ में झोला है बैग हैं।

अब बस लोहे की है बस में खिड़कियां हैं खिड़की पे कुछ लोग चढ़े हुए हैं।

पीछे टैंकर रखे हुए है बहुत सारे बोरिया रखी हुई है ये मशीन के टिन से मशीन बनी हुई हैं।

और बीच में छोटी सी लाइन बनी हुई है डिवाइडर टाइप्स है और छोटे छोटे घास लगे हुए है जो की सेे--

ये एक मो ये एक आकृति बनी हुई जिसके पास ये लोग फोटो खिंचवा रहे--

एक तीन चार और सौर ऊर्जा भी लगा हुआ है ये बहोत बड़ा स्कूल है इसमें छोटे छोटे गा--

ये एक गार्डन है जो की यहाँ अक्सर लोग घूमने आते है और ये गार्डन बहुत अच्छा बना हुआ हैं।

गार्डन से एक मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति के नाम से ये गार्डन है और यहां पे पानी भी है फ़ुवारे भी है।--

रेड और ब्लू कलर की है और और येलो कलर की भी येलो कलर से पर्दे भी लगे हुए है फिम बस कही जारी है बस बहोत --